और उन्होंने लाल कलर की ड्रेस पहन रखी है और उनके चेहरे पे ब्लर भी लगा हुआ है।

मैट भी बिछा हुआ है और नीचे कुछ पाइप भी--

यहाँ पे एक नीले कलर का गेट लगा हुआ है और इसके ऊपर एक बैनर भी लग रहा है।

और यहां पे खिड़कियों पे शीसे लगे हुए हैं और उनके ऊपर कुछ--

और यहां पे कुछ मेज भी रखी हुई है और उनपे कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं।

और कुछ पौधे भी लग रहे हैं और काउंटर के ऊपर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और पेड़ भी लग रहे हैं और उनके पास में लाइट भी लगी हुई है।